एक्सेटरा बहुत सारे बॉक्सेस इस सेल्स में रखे हुए हैं और यहां दिखाने के लिए ब्लू कलर का शेरवानी भी दिखाने के लिए रखा दिखाया जा रहा है।

और ये बंडी के चार टायर भी हैं और ये बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं।

उसके इसके बाजू में एक ऑटो भी है और इसके राइट साइड में भी एक कार भी है।

यह टाइल्स की दुकान है यहां पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के टाइल्स हैं जैसे कि ग्रे कलर ब्राउन कलर ।

यहां सामने तीन लोग हैं और ऊपर व्हाइट कलर की लाइटिंग चमक रही है और उसके पीछे--

ये बुक की शॉप है यहां पे बहोत सारे बुक्स मिलते हैं जैसे के टेंथ ट्वेल्थ वन टू टेंथ सभी बुक्स अवेलेबल रहते हैं यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है और ऊपर एक फैन है।

और वायर भी दिख रहे हैं और इसके राइट साइड में सामान भी दिखाया जा रहा है और पीछे झंडा भी है इंडिया का--

ये बस स्टैंड है यहाँ पे ऑटो भी खड़े हुए हैं और बाजू में छोटा सा फूट्स स्टॉल भी है और यहाँ पे बस भी खड़ी हुई है जिसका कलर वैन वाइट है और यहाँ पे आदमी भी खड़ा हुआ है।